यह एक पेट्रोल पंप है जिसमें एच_पी का पेट्रोल का पंप है और सभी व्यक्ति अपने गाड़ियों में तथा कारों में डीजल पेट्रोल डलवा रहे हैं।

ये एक डा अ कुत्तों का अस्पताल है जिसमें न दो दो व्यक्ति हैं जो कुत्ते को इंजेक्शन लगा रहे हैं और साइड में भी कुछ इंजेक्शन रुई वगैरा फेक रखे हैं।

और चारों तरफ परदे लगे हुए हैं और टेबल पर टिशू पेपर वगैरा रखे हुए हैं।

यह एक शोरूम है जिसमें सभी प्रकार की हाथ में पहनने की घड़ियां लगी हुई है।

ये एक आ मकान के बहार का व्यू है जहाँ चारो तरफ एक छोटे छोटे पेड़ पोधै लगा रखे हैं और एक बीच में आ --

यह एक योगा क्लेसेस क्लासेस का रूम है।

यह एक टैटू की शॉप है।

जिसमें छोटे बड़े सभी फूल है।

और उसके ऊपर एक अ डस्टबिन रखे हुए हैं और बलूंस लगे हुए है।

और सामने एक कंप्यूटर लखा हुआ है और एक डस्टबिन भी रखा हुआ है।

एक कार आपस में जा रही है।

यह एक बिल्डिंग है और ग्रह है जो बाहर पेड़ पौधे लगे हुए हैं और --

इसमें टीचर्स बच्चों को पढ़ा रहा है सभी बच्चे कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं।

यहां पर एक मूर्ति का उद्घाटन हो रहा है और एक ये धर्म सम्मेलन है।